लाइट जल रहे है पोस्टर लगे है बाहर तीन स्कूटी खड़ी है डोरमेट रखा है लोहे की जाली पड़ी है।

पीछे बड़े पेड़ लगे है वायर हैं।

बाकि दुकानों पर शटर लगे है बहार बाइक खड़ी है साइकिल खड़ी है दरवाज़ा है।

पत्थर की दीवार पर पत्थरो में खुदी हुई मूर्ति बनी हुई है।

आने की दुकान है बोरियो में भर कर अनाज रखा हुआ है रंग बिरंगी बोरियां है।

ब्रांड न्यू गाड़ियां है पोधा लगा है खम्बा है बहार हरी घास है।

हॉल है नीली लाल दीवारे है कुर्सियां लगी है लोग बैठे है।